और ये पेट के बल लेटे हुए हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से।

ये सीतामढ़ी का गोविंदाका कॉलेज है और ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है।

ये सड़क साइड का दृश्य है । यहाँ एक हौंडा की कार लगी हुई है।

बैग लगाए गए हैं यहाँ कई प्रकार के टूल्स हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं।

ये एक पार्क हैं जहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और एक मनुष्य सबकी तस्वीरें ले रहे हैं।